अन्दर जाके कोई चोरी नही कर सके और एक गेट है यहाँ पे घंटी टंगी हुई है और भी कई सारी मूर्ति दिखाई दे रही अगल-बगल --

यह किराना दुकान है इसमें बहुत सारे आइटम रखे हुए है पटाखा है ।

अगरबत्ती है सर्फ है साबुन है तेल है ये कई प्रकार के सामान है जो लोग यूज़ करते है। दुकान है।